यहां पे बहोत सारी कॉम्पिटिशन किताबें भी रखी हैं एकेडमी किताबें भी रखी हुई हैं।

यहां पे मुझे सड़क के दोनों किनारो पर बहोत सारे लाइन से लाइन वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं।

फोटो में मुझे अह कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि मास्क पहने हुए हैं।

जो कि बस की ओर जा रहे हैं कुछ लोग बस में चढ़ रहे हैं यहां पे मौसम साफ दिखाई दे रहा है एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और इसके साथ मुझे एक कच्ची दीवार भी दिखाई दे रही है जिस पर लिखा हुआ है केंद्रीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र।